इंसान बैठे हुए दिखाई दे --

एक आता हुआ दिखाई दे रहा सामने आजू बाजू मॉल बना हुआ दिखाई दे रहा--

वॉइस लेके दिन का दिन दिन का समय दिखाई दे रहा हैं।

अ सामने आधे-आधे कई सारे घर बने है छोटे-मोटे कई सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे है।

सामने को सी_यु_पी ऑ ऑप्टि ऐसे लिखा आजूबाजू की सारी लैपटॉप लैपटॉप रखे हैं। आजूबाजू की सारी कुर्सियां बेंच --

एनिवर्सरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बैलून वलून रेड कलर के ब्लैक कलर के किधर बैलून वलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू कई सारे--